ये तस्वीर एक ग्राउंड की है ये ग्राउंड बहोत बड़ा है।

यहां एक पंखा भी दिख रहा है और एक--

बहुत सारे बड़ी तस्वीरें भी रखी हुई हैं।

ये तस्वीर एक कार्यक्रम की है।

एक बिजली का बोर्ड भी है औ--

ये तस्वीर एक बिल्डिंग की है।

यह तस्वीर एक आदमी की है। यह आदमी हरि टी शर्ट पहन कर खड़ा हुआ है।

और यहाँ बहोत सारी पथरीली जमीन हैं बहोत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं।

और यहां बड़ा सा मंदिर है।

ये तस्वीर एक दुकान की है।

ये तस्वीर एक सड़क की है सड़क के किनारे कई दुकानें भी है।

यहां पर बहोत सारा सामान है और एक किराने की दुकान भी है।

जिसमें हरि घासें लगी हुई हैं।

यहां पर बहोत सारी बिल्डिंगे दिख रही है।

ये तस्वीर एक डी_जे की है।

ये तस्वीर एक सड़क की है।

कान के बाहर बहोत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं।